यह फोटो हमें मंदिर का लग रहा है। यहाँ पर लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर लोग दूर-दूर से आकर बहोत ही बेहतरीन तरीके से --

ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा है। यह किसी समन्दर के किनारे का दृश्य है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी-अच्छी बत्तखें तैर रही हैं।

और इस नाव पर दो लड़के बैठे हुए हैं और दोनों नाव चला रहे हैं।

यहाँ पर लाल कलर की कुर्सियां भी रखी हुई हैं और इसे गुब्बारों से सजाया गया है। यहाँ का दृश्य बहोत ही देखने लायक लग रहा है।

यह फोटो एक घर का लग रहा है। मुझे लगता है कि यह बैंक लग रही है। यह बैंक सरकारी लग रही है और यह एक महिला पर भी खड़ी है और हमारा वली भाई आ रहे हैं।

यह फ़ोटो किसी के घर का लग रहा है | यहाँ पर एक गाय खड़ी हुई है | इस गाय का कलर सफ़ेद है सफ़ेद नहीं ब्लैक है।